लोग खड़े हुए हैं और पास में ही एक बहुत रंग बिरंगे फूलों की दुकान भी है।

शादी अटेंड करके बाहर आ रहे हैं।

व रोजेज रखे हुए हैं उसके पास में--

रखे हुए हैं और कुछ किताबें भी शैल में रखी हुई है।

कारपेट भी रखा हुआ है।